और प्रार्थना यहाँ अच्छा होता है और बहो --

गाँव की औरतें सर पे कुछ लेके जा रही हैं। ये एक गाँव लग रहा है।

ऊपर भी दुकान लग रहा है अच्छा जगह है।

लड़का पिकनिक मनाने आया है वो हाफ पेन्ट टी-शर्ट पहनी पहने हुए एक पेड़ के नीचे खड़ा हुवा है।

यह लरका ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और --

सैलून है शायद ब्यूटी पार्लर भी कह सकते है एक लड़का एक लड़की का हेयर स्टाइल बना रहा है।

कुशी नगर में भी पाई जाती है। यहाँ बोहत टूरीश लोग आते हैं। बुद्ध की पूजा करते हैं। बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं।

ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ मरीज है यहाँ कंपाउंडर नर्स भी है यहाँ दवा भी रखी हुई है सुई भी है।

खड़े हुए हैं लोग इलाज कराने आए हैं दवा भी दे रहे हैं और सुई भी लग रही है नर्स भी है।

और यह कपड़ा बोहत महंगा बिकता है क्योंकि यह हाथ का बना होता --

यह एक मैदान है। मैदान में लोग खेलते हैं। यहाँ काफी कचरा भरा है गन्दगी फैला है मैदान में जहाँ बच्चे खेलते हैं।